यहां पे पानी आ रहा है तो यहां पे पत्रों के पीछे पीछे--

यहां पे एक सोफा है जो यह पे बहुत सारे रखे हुए --

और यह पे खंभा है जो लाइट होती है रात में फोकस आ जाता है।

और यहां पे पन्नियों में भी फूल रखे गए हैं कौताम की तरह बड़ासा दुकान है।

और यह पे डॉक्टर का जैन हॉस्पिटल बोल के लिखा गया है।

और बादल भी हैं और वह पे बहुत बड़ा सा पेड़ भी है जो सुख हुआ है पत्ते हैं।

यहां पे बिल्डिंग नजर आ रही है जो यहां पे वाइट कलर की है और यहां पे पोस्टर लगाया हुआ है।

यहां पे है बड़ा गया है और यहां पे बहुत सारे गलती लगी है।

प्रणामी है और यहां पे रहते हैं गोल्डन कलर के और ये--

और यहां पे बहुत सारी गाड़ियां रुके हैं।

नहीं आ रही और यहां पे आसमान में थोड़े से बादल नजर आ रहे हैं।